टीचर बहोत अच्छे होते हैं टीचर भगवान का समा--

ये हमें एक कोई किरणा की दुकान दिख रही है जिसके अंदर--

स्विमिंग पूल में बच्चे नहाया करते हैं और स्विमिंग पूल बहोत ही सुंदर सा लग रहा है।

बहोत ही अच्छे भगवान जैसे उनको माना जाता है।

जैसे यह एक फोटो मतलब कोई सी बुक लिए हैं जिसमें लिखा है--

उन बसों के ड्राईवर दारु पी के गाड़ी चलाते हैं और --

मेरी यहां पर तेरह मिनट तेईस सेकंड की रिकॉर्डिंग हो गई है और सामने हमें एक-

तो आ रहा नहीं है मगर हमको--

कुछ तो इसमें दिखना चाहिए हमको--